यहाँ एक टेबुल के ऊपर प्लेट रखी हुई है प्लेट में राइस ककड़ी निम्बू प्याज व --

यहाँ एक टेबल के ऊपर बहोत सारे गुलदस्ते रखे हुए हैं पहले वाले गुलदस्ते पर ग्रीन पिंक ब्लू सिल्वर येलो कलर का आखरी वाले पर रेड --

दोनों ने लुंगी पहन रखी है बीच मे दो बोरे रखे हुए है।

किनारे पर पेड़-पौधे घास-फूस लगी हुई --